बिल्डिंग के ऊपर में बहोत सारा तार जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें से आगे में एक औरत भी खड़ी है आगे में उसके बहोत सारा टेबल लगाया गया है जिसके ऊपर बहोत सारा सामान है।

बागे में बहुत सारा पेर भी दिखाई दे रहा है गौतम भगवान के कपड़े का रंग पीला-पीला दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का रंग लाल लाल दिख रहा है जिसके ऊपर में कुछ कुछ लिखा भी गया है आगे में लोहे का कुछ रॉड भी है।

पीछे साइड भी बहोत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है जोकि लाल पीले हरे--

के बगल में एक इंसान भी खड़ा दिखाई दे रहा है जिसके पीछे साइड बहोत सारा पोस्टर लगाया गया है।

गाड़ी के आगे में एक इंसान भी खड़ा है इस गाड़ी का एक चक्का भी दिखाई दे रहा है और आगे से पेट्रोल भरने वाला भी दिख रहा है।

यह एक बहुत बड़ा सा ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है जिसमें और भी बहुत सारे उपकरण लगाए गए हैं।

बंधा हुआ कुछ सामान और टेबल पे बहोत सारी फाइले जैसे की--

दो साइकल है कुछ लोग भी खड़े हैं और यहां पे पेड़ है घर है टाटी है और भी बहोत सारा लोग है।

बगल में एक मेडिकल दुकान भी है आगे में एक बाइक भी लगी हुई है।

यह एक सरकारी स्कूल है जिसके आगे में बहोत सारी बाइक लगी हुई है पीछे में कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ खड़े भी हैं।

यह एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं --

यह एक कपड़े का दुकान है जिसमें बहुत सारे रंग का कपड़ा रखा हुआ है।